और बना रखा है घर को प्यारा सा लग रहा है पंखा लगा हुआ है।

टॉयलेट करने जा सकते हैं खाना खा सकते हैं पी सकते हैं बैठ सकते हैं।

कालू भाई खड़े हैं गोरा भाई खड़े हैं कच्चे रोड पे नहा रहे हैं एक हाथ बांध के खड़ा है।

जन्नत दिखाउगी --

घनु भाई ओ मेरे भाई तेरे लिए तेरी जन्नत सजाऊंगी।

जाने मन चुपके-चुपके --

तुमने ऐसी बात कही।

मेरा बेटा यहां पर घूम रहा है। हीरा बेटा की मम्मी यहां पर घूम रही है।

एक बंदे ले लूंगी पहेन रखी है शर्ट पहन रखी है

और एक तीन चार बंदे हैं एक बंदा पीछे के तरफ देख रहा है घुटनों पर बैठे हैं।

ये किसी केदारनाथ फार्मेसी है।

काफी लंबी बिल्डिंग है चारों तरफ से बनी हुई है बीच में गैप छोड़ रखा है पार्किंग के लिए और एक बाइक खड़ी--

इसमें पानी का पाइप लगा है छत से नीचे गिरने के लिए।